इक में एक घास देखने को मिल रही है पची उड़ घाटियो का ये सीन है एक चटान देखने को मिल रही है जो की--